पीली कलर की दिख रही है और हल्की इ सी गुलाबी कलर की नजर आ रही --

यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है उसने एक दस्ती पर कुछ मछलीया रख राखी है वो सफ़ेद कलर की दिख रही है।

यहाँ बहुत सारे लोग है जो कुर्सीयों पर बैठे हुए है यहाँ बहुत सारी कुर्सिया रखी ई हुई--

यहा बहुत सारे आ अ अ तीन चार लेडीज दिखाई सभी ने मास्क लगा रखा है एकी ने नहीं लगा रखा है और एक बेंच --

उसके आगे हरे कलर के पौधे उगे हुए है जिनमे फूल उगे हुए है जो फूल पिले कलर के दिखाइ दे रहे है उसमे हरे क--

यहाँ बहुत सारे लोग है तीन छोटे बच्छे है हे है और उसके पीछे केला दो केले रखे हुए है जो पीले कलर रहे है।

यहा बहुत सारे लोग दिख रहे है जिन्होने सफ़ेद कपड़े पहने हुए है वो सिड़ी पर खड़े हुए है सीडी सफ़ेद कलर की दिख रही है और उनके उप्पर एक गमला टंगा हुआ है जो जिसमे फुल है।